अमीनाबाद में मार्केट की दुकान है।

आदमी कुछ बच्चे कुछ इसकी तैयारी बांध रहे हैं टेंट वेंट।

चम्मच भी रखे हुए हैं।

कलर की रेलिंग हुई हुई है।